इस तस्वीर में हमें दूध पानी दिखाई पड़ रही है।

जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं।

इसमें रेलिंग्स लगी है डिवाइडर लगी है।

अपनी कला का प्रदर्शन करती नजर आ रही है इस स्कूल का नाम है राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल ।

सफेद कुर्ते में नजर आ रहे है।

जैसा कि हम इस तस्वीर में देख पा रहे हैं यह तस्वीर में काफी गाड़ियां नजर आ रही है।

इसमे काफी हरियाली है और बहुत ही नेचुरल है।

जिसमें की दो कर्मचारी यह दुकान को संभाल रहे हैं कस्टमर्स को देख रहे हैं।

जैसा कि आप यह तस्वीर देख पा रहे हैं यह--

टीचर्स की भी यहां पढ़ाई होता है।

आसपास के ट्रक ड्राइवर्स जो थक कर गाड़ी चला के थक के यहाँ खाना खाने आते है।

जैसा कि आप यहां तस्वीर देख पा रहे हैं इस तस--

जैसे कि आप यहां तस्वीर देख पा रहे हैं इस तस्वीर में हमें एक व्यक्ति--

यहां लोगों को किराए में भी दिया जाता है।

जैसे आप यहां तस्वीर देख पा रहे हैं यह तस्वीर में एक छात्रा--

कत्थक डांस करती नजर आ रही है यहां डांस काफी प्रसिद्ध है इंडिया में--

यह तस्वीर देख पा रहे है यह तस्वीर एक लीविंग रुम का है जीसमें लोग रहते है खाते है टी_वी देखते है।

जैसे कि आप यहां तस्वीर देख पा रहे है।

रहे हैं जो टोकरियों में रखे हुए हैं बिकने के लिए इसके ऊपर दो दर्जन केला--

अपना गाड़ियाँ लाके पेट्रोल भरवाता है और हवा भरवाता है।

देखने से यह तस्वीर यह प्रतीत होता है यह एक मैकेनिक का शॉप है।

यह तस्वीर एक सुंदर सा बेडरूम है।